जिसके ऊपर कार्यालय बस्तर जिला सहकारी एवं मर्यादिक लिखा हुआ है।

बिल्डिंग के हमें अंदर हमें कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है और बाहर की तरफ हमें पीछे पेड़ दिखाई दे रहा है।

और वहाँ दो कारे खड़ी है काफी सारे लोग खड़े है बहुत सी बाइके खड़ी है।

हमें यहाँ पर एक शादी का हॉल नजर आ रहा है जहाँ पर कुर्सी पर एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

अंदर से लेके बाहर सीढ़ियों से नीचे तक पूरा एक लाल रंग का कार्पेट बीच हुआ है।

हमें यहाँ पर एक स्कूल की बिल्डिंग नजर आ रही है जिसपे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिखा हुआ है।

चर्च के दूसरी दीवार पर बहोत सारी खिड़कियाँ नज़र आ रही है और पीछे घास का मैदान और बहोत सारे पेड़ नज़र आ रहे है।

बस लाल बस के पीछे हमे एक मोबाइल की दुकान नज़र आ रही है जिसपे ओप्पो और सैमसंग लिखा हुआ है।

वो बिल्डिंग कार्टून मेडिजिम जैसी लग रही है।